यहा एक मंदिल का दृश्य है।

दुकान का दृश्य है जिनमें पोस्टर लगाए हुए दिख रहे हैं।

बैट दिख रहे हैं बाल दिख रहे हैं।

महिला एक दिख रही है दो तीन आदमी दिख रहे--

यह एक बेड बनाने ओना दुकान का दृश्य है।

व्हाइट भी है बड़े शटर दिख रहे हैं।

काले कलर के बादल दिख रहे हैं।

इसमें अलग अलग प्रकार के समान नजर आते हुए दिख रहे हैं।

इनमें लिखे हुए कुछ दिख रहा है।

यह एक बिल्डिंग का दृश्य है।

बहुत सारे व्यक्ति दिख रहे हैं बाइक दिख रहा है।

इस दृश्य में एक कार दिख रहा हैं।

बहुत सारे बल्ब दिख रहे हैं।

पीछे खिड़कियाँ दिख रहे हैं दरवाजे दिख रहे हैं।

दो टेबल बड़े बड़े दिख रहे हैं।

इनमें कुछ अंदर रखे हुए नजर आते हुए दिख रहे हैं।

नीचे लगे हुए सीलिंग दिख रहे हैं।

बोटल रखे हुए हैं एक कार्टून रखा हुआ है।

बाइक दिख रहा है बाइक पे बैठे हुए व्यक्ति दिख रहे हैं।

टेबल दिख रहे हैं इनके रखें ऊपर बहुत सारे सामान दिख रहे हैं।

बिल्डिंग दिख रहे हैं बाहर का एक--

स्कूटी दिख रहा है रस्ते दिख रहे हैं।

इनमें कुछ लिखे हुए दिख रहे हैं।

गेट दिख रहा है खिड़कियां दिख रहे हैं बल्ब दिख रहे हैं।

टेबल दिख रहे हैं एक बड़ा सा सीढ़ी दिख रहा है पेड़ पौधे दिख रहे हैं।

इनमें कुछ लिखे हुए नजर आ रहें--

उनके नीचे भी पोस्टर लगे हुए दिख रहे हैं।

मंदिर एक बनाए हुए दिख रहे हैं रेड इनके रंग है पोस्टर दिख रहे हैं।